फोटो में मुझे एक मॉल जैसा कुछ दिख रहा है जो--

गेट के आगे कुछ लकड़ियों का टुकड़ा है और कुछ तारें भी हैं।

और इस दो मॉल के आगे काफी सारी बाइक्स लगी हुई है और साइकिलें भी हैं और इसमें एक आदमी भी दिख रहा है।

फोटो में मैं मुझे एक रोड दिख रहा है उस रोड के अगल बगल काफी सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

और आसमान में बादलें भी दिख रही हैं और कुछ पेड़ की टहनियाँ भी दिख रही हैं और उस पुल पे जाते हुए लोग --